यहाँ पर हमें पुराने तोप नज़र आ रही है जो पुराने टाइम की लग रही है इसके सामने घर है इसके सामने एक लोहे की जाली बनी है ये दो बड़े पत्थरो के स्टेनो पर रखी गइ है।